गुलाबी रंग के कपड़ा पहने हे पिछू म बड़े-बड़े घर दिखत है और लाइट भी दिखत हे।

बड़े बड़े पानी बाल्टी --

पीछू मा बड़े से बिल्डिंग जितनी घर दिखत है एक दरवाजा दिखत है और पीछू मा पेड़ दिखत है।

एकरा एक दीवार दिखत है और पीछे मा तार लगे है।

एक रा सामने मा एक गार्डन जिसने दिखत है और बड़े-बड़े पेड़ ह दिखत हे नि--